एक घर के बाहर एक मनुष्य है।

और यहां पर अंध अंधेरा है।

यहां टीन दिख रहा है टीन ब्लू कलर का दिख रहा है घर क्रीम कलर का दिख रहा है।

साइड में एक पपाया ट्री है।

यह एक बहुत बड़ा पे पानी दिख रहा है जिसका सामने में कुछ भी नहीं है सिर्फ बाली दिख रहा है।

नदी पेर के सामने है।

सफ़ेद घर दिख रहा है पहाड़ दिख रहा है।

इस रूम पर दो चित्र का फ्रेम है एक कुर्सी है।

चार चेयर दिख रहा है और घर का सीरी एक एक दिख रहा है।

वो हिरण पीछे मुंडा हुआ है छोटे छोटे फूल व्हाइट कलर का दिख रहा है।

बहुत घना जंगल बड़ा बड़ा पेड़ है।